स्लिम अरे पांच लाइट भी मारे हैं उनके ऊपर।

तार गए ऊपर से और सामने बोर्ड लगा है और हरा-हरा पेड़ ओड लगा है।

यहां मुझे सामने से कंप्यूटर नाजा दिख रहा है उसके पीछे कैलेंडर दिख रहे हैं।

ये रावतपुरा सरकार का दिख रहे हैं ये इंटरनेशनल स्कूल --

अपना सब लोग देख रहे है अह तीन कुर्सी लगाया है एक ब्लैक कुर्सी एक नीला कुर्सी एक लाल कुर्सी लगा है।

में दिख रही है हां घास लगे हुए दिख रहे हैं।

ब्लैक पेहन के अंकल आंटी सब लोग--

ये ऊपर में कालम खड़ा करते हुए दिखाई दे रहा है घेरते हुए।

बच्चे लोग का पूरा खिलौना समान दिख रहा है मुझे--

ये क्या चीज है गुंबद जैसी दिख रही--

फिर एक पेड़ दिखाई दे रहा हैं फिर पीछे पानी पानी पानी पानी दिखाई दे रहीं हैं।